यहां पर ग्लास दिख रहा है एक चप्पल भी दिख रही है।

और पेट्रोल के डब्बे रखे हुए है।

और ब्लू कलर का एक यहां लंबा स्टैंड दिख रहा --

ये एक कॉलेज है यहां पर कई सारे झाड़ मौजूद हैं।

और कई सारे लोग दिख--

और पहाड़ के ऊपर कई सारे फथरे हैं।

एक घड़ा दिख रहा है एक बैरल भी है।

सेफ्टी के लिए आधे दीवार उठाये गये है।

एक पर्पल कलर का पेंट करा गया है एक पर्दा है।

एक आदमी व्हाइट शर्ट में अपनी बच्ची को बॉल खेला रहा है।

एक आदमी पीछे हाथ बांध लेकर ठहरा हुआ है।

ये एक घर है यहां पर सीढ़ियां है।

से ब्लैक कलर का पेंट लगाया गया है।

यहां पर बेड पर गलाफिंग बिछाया हुआ है दो थके रखे हुए है।

यहां पर ग्रिल लगाए हुए है सेफ्टी के लिए।

और दो बत्तख उड़ रहे हैं।

ये कॉलेज की क्लास है यहां पर कई सारे बेंच रखे हुए हैं।

और उसके बाजू में येलो कलर का है और पिंक कलर का शीट व्हाइट कलर का शीट है।

इसके बाजू एक औरत रेड कलर की साड़ी में ठहरी हुई है।

यहां नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है उसके बाजू में तीन पट्टियां हैं उसके बाजू में तेल है और कई सारे घर के सामान मौजूद है।

कई सारे लोग ले रहे हैं बहुत सारी भीड़--

और उसके बाजू में एक साइकल ठहरी हुई है।

गणेश के फोटो लगाए हुए हैं।

लाइट के खंभे और वाइट्स भी दिख रहे हैं।

यहां पर बोर्ड पर हिंदी में लिखा हुआ है।

यह एक गैरेज के जैसा दुकान है।

गोदाम भी दिख रहे हैं एक आदमी चल रहा है।

और एक आदमी हाथ में एक वाइट कलर का शीट पकड़ कर बैठा है।

ऊपर एक आने जाने का स्टैंड है।

लास्ट में एक आदमी दो लकड़ी लेकर ठहरा है।

हां पर बलूंस लगाकर सजाया गया है।

एक बाइक है अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पर कृष्णा श्री कृष्णा लिखा हुआ है।

यहां पर तीन चेयर्स भी नजर आ रहे हैं दो रेड कलर की और एक गोल्डन कलर की।

मंदिर के पीछे कई सारे पहाड़ मौजूद है।